अच्छा है ऑटो भी भर वर दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है और साईकिल वाला भी है ऑटो भी है।

भी है पौधा भी है बहुत सुन्‍दर-सुन्‍दर फूल भी है और लाल कलर का ग्राउंड है।

टी.वी. उवी है अच्‍छा है लेकिन --

और पेड़-पौधा में फूल भी है। अच्छा लग रहा है और ये घर भी बहुत सुन्‍दर है।

अंधेरा दिखाई दे रहा है और आसमान नजदीक से दिखाई दे रही है। कद बहुत सारे लोग हैं बाईक ले के ले के ट्रेक्‍टर ले के। अंधेरा दिखाई दे रहा है। पूरा साफ नहीं दिखाई --

वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा है बै बतख भी तैंर रहा है। अच्‍छा लग रही है।

यहाँ पर पत्‍थर का बहुत बड़ा घर है और बच्‍ची भी है औरत भी है लड़का भी है। बहुत देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और पत्‍थर भी है।

यहाँ पर एक म‍न्‍दिर है और सीढ़ी में लोग है और ये सफेद कलर का कपड़ा पहन के और किताब ले के हैं और फुल लटका हुआ है। म‍न्‍दिर खूबसूरत लग रहा है। सफेद कलर का है। बहुत अच्‍छा लग रहा है बहुत सुन्‍दर है और लोग भी खड़ा होके है।

और एक ऑटो भी है पेड़ भी हैं पौधा भी हैं उसमें फूल भी है देखने में बोहोत खूबसूरत लग रहा है और ये लाल कलर का है। ऑटो काला कलर का है और पेड़ भी हरा कलर का है।

चक्‍का है आगे उसके चेयर है और अंदर भी बहुत बड़ा बस है दो बस है और अच्‍छा लगा।

और बहुत सुन्‍दर लग रहा है। बस उसके पीछे पेड़ भी है और बहुत बड़ा रोड है। उसके पीछे दो आदमी भी ख --

और एक पन्‍नी भी है लिफाफेे हैं और बहुुत सारे बक्‍से-उक्‍से रखे हुए हैं। बहुत खूूबसूरत लग रहा है। वह भी पस --

बहुत सारा समान है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। सुन्‍दर लग रहें हैं और लाल कलर का है और हरा कलर का है सफेद कलर का है। खूबसू --

यहाँ पे बहुत बड़ा घर है। घर में बहुत सारे सजावट किये हुये हैं और उम्म उम्म मूर्ति भी है एक। एक लड़की भी है और बहुत सारे ये बोर्ड उर्ड टँगा हुआ है और नरियल का पेड़ है। बहुत सारे पेड़ हैं हरे -भरे। बहुत खूबसूरत लग रहा है।

यहाँ पर एक बहुत अच्‍छा सा घर है लेकिन मौसम बहुत उम उम अंधेरा लग रहा है और पेड़-पौधा भी है और एक खम्‍बा है।

यहाँ पे एक कम्‍प्‍यूटर का दुकान है। बहुत सारा सामान लिखा हुआ है और एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और कैमरा उमरा लगा हुआ है। उसमें बिजली भी है। उसमे फाटक है बल्‍ब है लाल कलर का। बहुत सुन्‍दर लग रहा है।